कार दिखाई दे रही--

लाल रंग की है।

है और इनके पास--

साइकिल दिखाई दे रहे--

कई गाड़ियां दिखाई दे रही--